हम्म आ-आग बुझाने का रखा हुआ है। खिड़कियाँ --

सामने एक भोजनालय दिख रहा है | इसमें लाल रंग की उम टेबल रखी है और लाल रंग की कुर्सियाँ रखी हुइ है |

भोजनालय दिखाई दे रहा है जिसमे टेबल और कुर्सियां है कुर्सियों का रंग हरा है।

और उम कुछ पेड़ पौधे भी हमे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और अ सफ़ेद कलर की गाड़िया खड़ी हैं वैन खड़ी है।

ए.सी. लगी हुई है | सफ़ेद रंग की प्लेट दिखाई दे रही है | सामने गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है | काँच के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें ऊपर गुब्बारे लगे हुए हैं जिनका रंग लाल है भोजनलाय में पीले रंग के श बने हैं।